साइड में एक लकड़ी का तंबू भी हैं पीछे देख सकते हैं दो पोस्टर भी लगे हुएं हैं।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

पीछे बहोत सारी झाड़ियां और है जो की अलग प्रकार के पौधे हैं इनका अच्छे से काट के लगाया गया है।

घर ओर भी दिखाई दे रही हैं मतलब ये पिक्चर एक घर से ली गई है।

क्योंकि पीछे जो स्कूप रखे हुए हैं वो चेकिंग के लिए होते हैं और मशीन है वो भी चेकिंग की लग रही है।

हम यहां पे देख रहे है यह एक शादी का दृश्य है।

और इधर साइड में इसके ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है एक महिला है जो किधर खड़ी दिखाई दे रही है।

साइकल लेके आ रहा है जिसके पीछे गाड़ा लगा हुआ है।